दाई और एक पेप्सी ब्रांड का कोल्ड ड्रिंक रेफ्रिजरेटर भी दिखाई दे रहा है।

जिसमें भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान है और माता लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही है।

यह तस्वीर बौद्ध भिक्षुओं के एक समूह को दर्शाती है जो ध्यान या प्रार्थना कर रहे हैं।

यहां कुछ जलाया जा रहा है जिसे एक मजदूर बड़े ध्यान से जला रहा है।

जो गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा और समग्र विकास के लिए जाना जाता है।

इसमें कच्ची या अधूरी बनी हुई सड़के है जो एक इमारत की ओर जा रही है।

उनके पास एक इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड खड़ा है।

ढाबे के सामने एक बड़ा पैनल गिरा हुआ है जिस पर भूपेंद्र राजा का ढाबा लिखा हुआ है।

ढाबे के पास कुछ बाइक और स्कूटी खड़ी है और कुछ लोग आस पास खड़े हैं।

कार भी वहां दिखाई दे रही है जो जिसका मालिक भी पेट्रोल भरा रहा है।

यहां एक प्राचीन मूर्ति है जिसमें गौतम बुद्ध की छवि बनी है।

पत्थर पर बनी आकृतियां अनोखी है यह कला का अद्भुत उदाहरण है।

बाईं ओर एक चट्टान दिखाई दे रही है जिसपर एक व्यक्ति सेना की वर्दी में खड़ा है।

उसके पीछे एक बड़ा और सजावटी गेट दिख रहा है।

मंदिर के आसपास सोलर लाइट और बिजली के खंभे लगे हुए हैं।

पीछे की खिड़कियों से एक बाहरी क्षेत्र दिखाई दे रहा है।

यह एक दुकान की तस्वीर है जिसका नाम साहू जी जलपान ग्रह है।

यह दुकान बानपुर रोड हाइवे चौराहा ललितपुर में स्थित है।

कान को लाल और सफेद गुब्बारों से खूबसूरती से सजाया गया है।

फार्मसी का स्थान राजघाट रोड ललितपुर उत्तर प्रदेश में है।

माहौल पूरी तरह से आस्था और श्रद्धा से भरा हुआ है।

पीछे की अलमारियों में विभिन्न प्रकार की किताबें रखी हुई हैं।

एक स्कूल का मैदान जहां कई छात्र स्केट्स पहने हुए हैं।

और छात्राओ ने सुरक्षा के लिए सर में हेलमेट भी पहना हुआ है।

सेल्फ में अलग अलग प्रकार की दवाईयां व्यवस्थित की गई हैं जो आमतौर पर फार्मेसी म में पाई जाती है।

से पुष्टि होती है कि यह एक ड्राई क्लीन सेवा से संबंधित स्थान है।

जगह काफी साफ सूती और अच्छी तरह मेंटेन की गई है।

इसमें दो बड़े लाल रंग के कैनेपी टेंट लगाए गए हैं जिस पे नीचे एक टेबल और कुर्सियां सजी हुई है।

कोल्ड ड्रिंक्स और जूस के लिए कोका कोला का फ्रिज भी दिख रहा है व्यक्ति दुकान के सामने खड़ा है।

यहां एक फुटवियर जूते चप्पल की दुकान है जिसका नाम ऋषि फुटवियर है।

यह फोटो एक रायमंड ब्रांडेड कपड़ों की दुकान दिखा रहा है।

जहां प्रीमियम सूट बनाकर अच्छी तरह सजाया गया है।